यह एक पेट्रोल पंप है | ये पेट्रोल पंप का नाम इंडियन आयल ऐसा है | वहाँ पे एक टेंकर खड़ा दिखाई दे रहा है जो पेट्रोल का है।

थोड़ा सा नजदीक जाके देखा तो उधर थोड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे पोधे वहाँ पे लगाये हुए हैं ।

वह एक घड़ी लगाई हुई है उस घड़ी में दो बज के आठ मिनट और पच्चीस सेकंड हुए है वह एक मुस्लिम तस्वीर लगाई गई है।

एयरपोर्ट का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ एक आदमी ने येलो और ब्लैक कलर का शर्ट पेहना हुआ है और एक नीले कलर की जीन्स पहनी हुई है उनके पीछे एक विमान दिखाई दे रहा है।

ये एक प्लेटफार्म का कलर दिखाई दे रहा है और जो ग्रिल लगे हुए हैं वो व्हाइट कलर के जो ग्रिल लगे हुए हैं।

पीछे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है और लकड़ी का कंपाउंड को वाइट कलर दिया गया है | उसके बगल में एक छोटा सा फुटबॉल दिखाई दे रहा है।